एक ओर लाइट लगी हुई है पीछे दीवाल पर एक पर्दा लगा हुआ है।

दरवाजे लगे हैं दो गोदाम बने हुई हैं गोदाम के पास में एक बोर्ड लगा है।

एक हॉल है हॉल में बहुत सारे पत्थर लगे हुए है दिवाल सफेद रंग की है।

हरे रंग की है टाली में बहुत सारी ईंटें भरी हुई है जिस पर एक आदमी खड़ा है जिसने सफेद रंग का सैट पहन रखा है।

इस पे बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं जिन्होंने सफेद रंग की ड्रेस पहन रखी है जो जूडो कराटा कर रहे हैं।

एक मेज है मेज के पास में कुर्सी पड़ी हुई है जिसपे एक कोट पहने हुए डॉक्टर बैठा हुआ है जिसके गले में आला है।

एक बड़ा मकान है मकान के बाहर लोहे का गेट लगा हुआ है।

इसपे विकास लिखा हुआ पीछे सड़क है सड़क पर एक मोटरसाइकल है जिस पर आदमी बैठा हुआ है।

एक आदमी बैठा जिसने काले रंग का जैकेट पहन रखा जिसके पास में हाशिया रखी हुई है।